यहां उत्तरी पूर्व की महिलाएं दिखाई दे रही हैं और छठ पूजा का त्यौहार बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मनाती हैं।

यह चित्र मेट्रो स्टेशन का है इसे हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है इसे हर व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर समय से पहुंच जाता है।

यहां की सभी महिलाएं छट पूजा करते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मनाती हैं।

यहां पर पूजा की सामग्रियां और फलों की टोकरियां भी मौजूद हैं।

दिखाए गए चित्र में बहुत से व्यक्ति मौजूद हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं।

इस चित्र को देखकर यह प्रतीत होता है कि बहुत से लोगों का खाना बनाया जा रहा है।

इस चित्र में महिलाएं और पुरुष मिलकर खाना बनाने का काम कर रहे हैं।

आज के दौर में औरतें इन दोनों के बिना नहीं रह सकती हैं।

यह चित्र एक किताबों की दुकान का है इस दुकान का नाम वेदांता बुक शॉप है।

यह गाड़ी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है इस गाड़ी में पांच व्यक्ति बड़े ही आराम से बैठे--

इस चित्र में आसमान बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है।

एक ने गुलाबी रंग का सूट डाला हुआ है और एक ने वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है।

जहां पर लोग आना जाना कर रहे हैं यहां पर--

एक एल_ई_डी टी_वी भी लगा हुआ है यहां पर सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं यहां पर बार--

बैठने के लिए चेयर भी रखी हुई हैं यहां पर अंदर भी टेबल और चेयर लगी हुई है।

सीढ़ियों के पास बहुत सारी हरियाली भी नजर आ रही है।

इसमें लाल रंग भी नजर आ रहा है।